सामने दीवार पर एक पोस्टर लगा हैं।

इस स्टोर में काफी लोग खड़े हैं।

पीछे बैलून है जो कि हरे लाल और सफेद रंग के है।

अलग अलग लाइन में भुट्टे पड़े हैं।

यह एक अल्ट्रासाउंड कलर डॉपलर और डिजिटल एक्सरे वाला--

सामने एक फंक्शन हॉल है इसमें खाने का प्रोग्राम किया गया है।

पीछे कुछ लोग गेट में हैं।

अलमारियां पड़ी है जोकि चार अलग अलग बॉक्से हैं।

कुछ लोग पूजा कर रहे हैं।

स्टील के बर्तन एक अलमारी में पड़े हैं।

सीढ़ियां है जहां पर लोग बैठकर मैच वैगैरा देख सकते हैं कुछ लोग--

घूम रहे हैं उसके पीछे एक पानी वाली--